यहाँ सामने मे एक ऑटो दिखाई दे रही है जो की पीले कलर की है एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है।

यहां सामने मे एक मकान दिखाए दे रहा है जिसमे एक गेट दे रहा है।

यहाँ सामने मे एक फ्रेम जैसा दिखाई दे रहा है जो की फोटोकॉपी करने का दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी सारी कॉपी --

पुस्तके दिखाई दे रही है नीचे मे दो तीन बॉक्स दिखाई दे रहे है ऊपर मे भी रखे हुए है और लाइट लगी--

लाइट लगी हुई है और चारों तरफ से बाउंड्री गिरा हुआ है यहाँ पर पेड़ पौधे भी दिख रहे है।

यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही है जिसके अंदर मे एक छोटा सा गुफा गया हुआ हैं। उस--

बहुत बड़ी जमीन दिखाई दे रही है यहाँ पास कचरा भी दिखाई दे रही है बहुत सारी बालू रेत गिरी हुई है।